काफी हरे भरे पेड़ पौधे दिख रखे हैं।

वो इन बच्चों की पाठ को चेक कर रहे हैं।

याह फोटो किसी बड़े इ स्कूल --

क्या ऊंची बिल्डिंग से लिया गया है।

जिसमें एक हॉल में काफी चेयर व टेबल सजाई गई हैं।

जिससे लोग ट्रैक्टर खरीदते हैं यहां--

अलग अलग फूलों द्वारा सजावट की गई है तथा काफी अलग अलग लाइटें की झलर लगी है।

जिसमें सामने एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए एक सजाया किसी एक सोफा पड़ा रखा है।

सुबह के समय लिया गया है जिसमें--